यहां पे एक चैनल गेट लगा हुआ है उसके अन्दर एक आदमी बैठा हुआ है ये एक व्हाइट कॉलर की दीवार है और उसमें एक बोर्ड लगा हुआ है।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

अंदर एक वॉशबेसिन लगा हुआ है और ऊपर कुछ ट-अ टोवेल्स के टुकड़े भी टंगे हुए हैं।

यहाँ पे बहोत सारी चेयर्स लगी हुई है जिसपे कुछ आदमी और कुछ औरतें बैठी हुए है और ऊपर लइटिंग्स लगी हुई है ।

यह एक समुद्र की फोटो दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक नाव में एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

और निचे वूडन फ्लोर है एक लड़की ने येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ है।

यहा पे कुछ ईटे दिखाई दे रही है एक आदमी यहां पे सीमेंट से दीवार बना रहा है उसके पास भी पिंक कलर का घडा भी रखा हुआ है और ब्लू कलर का टब--

मग्गा भि रखा हुआ है और यहा पर बहुत सारा सीमेंट का ढेर है उसके ऊपर एक रस्सी लगी हुए है और साइड में एक व्हाइट कलर का कट्टा रखा हुआ है।

यहाँ पर एक गार्डन है गार्डन मे यहाँ पर दो चप्पल पड़ी हुई है उसके पास मे एक आदमी लेटा हुआ है और एक आदमी ने उसका पैर पकड़ा हुआ है।